इस इमेज में हमें गोल्डन एंड थोड़ा-सा ग्रे कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

दुकान में सब सामान व्यवस्तिथ रखा हुआ है।

न छोटे-छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ड्रेस पेहना हुआ एक जैसा ड्रेस कोड पेहने हुए हैं।

नदी सुख चुकी है। यह थोडा गर्मी के टाइम का सीन दिखाई दे रहा है। नदी बहोत ज्यादा सुख चुकी है।

किसान लोग बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग बैठे हुए है। ग्राहक भी आये हुए है खरीदने के लिए यहा पे।

लोग गर्मी के दिन में यहां एन्जॉय करने आ सकते हैं। एकदम ठंडा माहौल नजर आ रहा है यहां। बोहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। घूमने के लिए तो बोहोत ज्यादा ही अच्छा है।

पिंक कलर थोड़ा कथई-सा कलर दिखाई दे रहा है।

और एकदम रोशनी सूर की रोशनी एकदम बिलकुल बहोत ही अच्छा --

पंडाल का कलर एकदम क्रीमी लग रहा है। क्रीमी टाइप --

दिखाई दे रही क्रीमी कलर की टाइलें दिखाई दे रही हैं। एक ब्राउन कलर की भी दिखाई दे रही है टाइल्स । कुछ --

पतझड़ हुआ हुआ है। ज्यादा हरियाली नही है।

बोहोत सारी भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की।